देख सकते है भाई बिल्डिंग बन रहा है कितना अच्छा दो मंजिल तीसरा मंजिल देख सकते है उधर बादल पीला है देख सकते है पीलर है देख सकते है भाई सरिया भी है देख सकते पानी थोड़ा लगा है भाई लोग कितना अच्छा लग रहा है देखिए--

देख सकते भाई लोग कार लगा है यहाँ पे यहाँ पे एक गड्डी है देख सकते यहा पोस्टर है देख सकते मकान है भाई ।